और कुछ दिया जलता हुआ दिख रहा है और अगरबत्ती जलते हुए दिख रही है और यहाँ पर जो है कुछ पर्सन आगे में खड़े हुए दिख रहे है कुछ पर्सन इधर खड़े हुए दिख रहे।

और यहाँ पे नीचे काफी सारे पत्थर दिख रहे है पत्थर और कुछ मिट्टी दिख रही है मिट्टी ब्लैक कलर में दिख रही हैऔर आसपास में कुछ खाबी वगैरा दिख रहे है।